बहुत सारे आदमी हैं महिलाए हैं पुरुष हैं जो कुछ लोग दुकान के अंदर है जो सामान सब ले रहे हैं और कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं।

अ यहाँ पे सभी लोग जो है फूल बेच रहे हैं और ताजे ताजे फूल सब है कुछ लोग सब्जी भी बेच रहे हैं | साग वाग बेच रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे ये सब खरीदने आए हैं और बोहोत लोग बेच रहे हैं।

एक आदमी हैं जो मतलब की लाइब्रेरी में हैं और वो एक कोई वॉर नाम की पुस्तक है जो उसको हाथ में लेके वो तस्वीरें ले रहा है अपना --

अ ये एक नाई की दुकान है और ये दुकान आज ही शायद ओपनिंग हुआ है तो ये पूरा सजाया हुआ है एकदम माला से |

यहाँ पे मजदूर है जो छड को खड़ा किया हुआ है और दूसरा एक मजदूर है जो छड़ पकड़ा हुआ है। एक लड़का है शायद उसी का ये काम हो रहा है। वो लोग वो बैठके के जो मिस्तरी लोग को गाइ कर रहा है और ये खड़ा --

जिसमे की जो है छे महिलाए जो सेम साड़ी पहनी हुई है। एक महिला अलग साडी है वो सफ़ेद साड़ी में है और ये लोग बाहर ग्राउंड में जो है खड़े होके फोटो खिचवा रहे हैं।

अअअ यहाँ पे एक अम्म्म आदमी है और उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा है। ये लोग शायद घूमने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे पानी है पानी में ये लोग खड़ा हैपानी लेकिन बहुत कम है ऊपर में ब्रिज भी है।

यहाँ यह दुर्गा पूजा का जो है अंतराल का है यहाँ पे दुर्गा माता है और भी दूसरे देवी देवता की जो है यहाँ पर मूर्ति है सभी लोग यहाँ पे भाग लिए हुए है और विसर्जन करने जा रहे हैं।